ये कोई गार्डन है जो कि दिखने मे काफी ज्यादा सुन्दर और अच्छा लग रहा है और गार्डन को हमें हमेशा साफ-सुथरा स्वच्छ रखना भी चाहिए इससे काफी ज्यादा यहाँ का वातावरण --